इसमें ये दिखाई पड़ रहा है की आगे ये एक शादी भवन है।

इसके अंदर पूरा अच्छा से सजावट किया हुआ है जैसे लाइट हो गया और ऊपर दो मंजिल है जिसके ऊपर लाइट लगा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारा आदमी बैठे हुए हैं।

ये प्रतीत हो रहा है की एक कचरेदान वाले ट्रेक्टर से कचरे दान उठा रहे हैं।

ये पार्किंग है जिसके आगे हनी लगा हुआ है और आगे हरा-भरा मैदान है और जिसके साइड में एक बड़ा-सा मकान बना हुआ है जो थोड़ा सा पुराना लगता है।

साइड में एक कांच का गेट बना हुआ है। आगे ऊपर पोस्टर लगा हुआ है। साइड में कुछ घर है।

इसमें ये है प्रतीत होता है इस प्रकार का जड़ जो है एक प्रकार की दुकान जो जिसमें कॉपी कलम अनेको प्रकार जैसे विद्यार्थी के लिए सभी प्रकार के चीज उपल्ध है।

--जो राजा महाराजा के घर जो दो सौ तीन सौ साल पुराना है आगे बहुत सारा हरा-भार घास मैदान है साइड मे एक जो बॉउन्ड्री दिया हुआ है।

के अंदर यह दिखाई पड़ रहा है यह छोटा बस स्टैन्ड है जिसके आगे एक बड़ा सा बस लगा हुआ है और दो टेक्सी लगा हुआ है बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

बढ़िया दिखाई पड़ रहा है यह एक बहुत बड़ा घर है यह घर दो मंजिल और साइड में दो ब्रिज और नीचे एक बाइक लगा हुआ है।

इसके अंदर यह प्रतीत होता है कि इस चारों हिरण चर - चर रहे है और साइड-साइड

इसमे यह दिखाई पड़ रहा है यह छोटा बस स्टेन है जिसके अंदर छोटे-बड़े बस आ के लगते है और यहाँ से खुलते है ।

इसके अंदर ये दिखाई पड़ रहा है यहां पेट्रोलपंप है। जो पेट्रोलपंप में से अनेको बाइक --